यह एक मन्दिल का फोटो दिखाई दे रहा है।

दुकान के ड्रावर में बहुत से कपड़े सरिया कर रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक व्यक्ति सर पर तगाड़ी लिए हुए जाते हुए नजर आ रहा है।